यह एक शॉप हैं जिसमें रैके बनी हुई है और इसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ रैक बनी है रैक मे बहुत सारी मिठाई और चने रखे हुए है।

बंधी हुई है एक से बढ़िया बंधी है दूसरे से भैंस बंधी हुई है नीचे घास पड़ी है।